इस फोटो में राधे कृष्णा दिखाई दे रहे है जो की ये बाँसुरी बजाये हुए दिख रहे है इनके पीछे एक मयूर भी दिखाई दे रहा है यहाँ किसी टेबल या स्टूल पर रखे हुए दिखाई दे रहे है।

उसके एक हाथ अपने कान के पास और एक हाथ सामने की ओर दिखाते हुए डांस कर रही है और नीचे के साइड एक फूल बेडशीट दिखाई दे रही हैं।

यह फोटो किसी मंदिर की है जिसमें की मंदिर के भव्य द्वार को बोहोत सारी बोहोत सारी सर्किटों से सजाया गया है।

यह फोटो एक नाई की शॉप की है जिसमें की एक आदमी की हेयर कट करते हुए दिखाई दे रहा है।